कुछ रोड पर लोग घूम रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और ये मुझे नाइट का समय लग रहा है यहाँ अँधेरा हो रहा है और यहाँ --

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बोहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भगवान की तस्वीरें रखी हुयी हैं।

यहां पर पर्दा लगा है ब्लैक कलर का | वह पर्दा मुझे दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे फर्श दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा स्टेज जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक लेडीज है जो माइक में बोल रही है।

बॉक्स रखा हुआ है बाहर बोर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ एक गार्डन सा है जिसकी हरी-हरी घास मुझे दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे फर्श--

ऊपर मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ में लगी हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे लइते जलती हुई दिखाई दे रही हैं नाईट का समय है और वहां पे सामने चेयर राखी है वो दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है जो कि सजा हुआ है। यहाँ पर मुझे एक सोफा दिखाई दे रहा है ऊपर एक पंखा चल रहा वो दिखाई दे रहा है।

और यहाँ फ्लॉवर्स लगाये गए हैं फूलो के गुलदस्ते सामने एक चेयर रखी वो दिखाई दे रही है कुछ लाइटे जल रही हैं वो दिखाई दे रही है और यहाँ पर खिड़की दरवजे दिखाई दे रहे हैं पर्दे लगे हैं वो दिखाई दे रहे हैं।